बहुत सारी स्टील के बर्तन भी रखे हुए हैं जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारी लाइटें लगी हुई है बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं।

यह एक फल दुकान का चित्र है।

टेबल पे बहोत सारा टिशू पेपर रखा हुआ है।

ऊपर में एक व्हाइट कलर का पंखा लगाया गया है एक सफेद कलर का ए_सी भी लगाया गया है।

यह घर के अंदर का चित्र है जिसका कलर सफेद है।

बाहर में एक आदमी खड़ा है जो ब्लू कलर का स्वेटर पहन रखा है।

सामने साइकिल दिखाई दे रही है उसे पर एक थैला है रेड कलर का--

सामने कुछ गमले दिखाई दे रहे हैं।

कुछ आदमी सामने है एक बच्चा पीले कलर का थैला पकड़ा हुआ है।

यह ब्लू और हरे कलर का टीशर्ट पहन रखा है।

एक स्ट्रीट लाइट लगाया गया है यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे भी लगाए गए हैं।

क्या इसका नाम डॉक्टर श्वेता पांडे पी_टी बी_पी_टी एम_पी_टी है।

कुछ लाइटे लगाई गई हैं एक बहुत बड़ा गेट भी है।

लाइटें लगी हुई है एक फोनपे का स्कैनर है बगल पे कुछ डाल रखा हुआ है येलो कलर का।

बहुत सारे आदमी औरत है बाहर में गाड़ियां खड़ी है।

बहुत सारे फ्रिज लगा हुआ है उसपर लिखा गया अरुन।

यह एक स्टेडियम के बाहर का चित्र है जिसका नाम बिरसा रेलवे स्टेडियम सिरसा रांची है।

दीवाल पे कुछ पोस्टर बनाए गए हैं इसमें बहोत सारे आदमी का चित्र बनाया गया है।